लगा हुआ है लगल है तलवा लागल है उधर हॉल है।

चार पाँच गो छौड़ा है सब लाल लाल कलर के तन्नी-मन्नी केबाड़ी में सज्जल धज्जल के फूल-तुल।

स्कूल है के घर है के व्हाइट कलर व्हाइट कलर ।